मौजिला फायरफॉक्स में एडवांस्ड फायरफॉक्स फीचर्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम एडवांस्ड फायरफॉक्स विशेषताओं के बारे में सीखेंगे
Quick फाइंड लिंक Firefox सिंक Plug ins यहाँ हम उबंटु 1004 पर फायरफॉक्स 70 का उपयोग कर रहे हैं
अब फायरफॉक्स ब्राउजर खोलें
डिफॉल्ट रूप से याहू होमपेज खुला है
अब फायरफॉक्स में लिंक्स खोजना सीखते हैं
फायरफॉक्स आपको एक सर्च बार प्रदान करता है और पेज में लिंक खोजता है
एड्रेस बार में टाइप करें डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्यूडब्ल्यूडब्यूडब्यूडब्ल्यूडब्यूडब्ल्ल्यूडब्यूडब्ल्यूडब्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्ल्यूडब्यूडब्यूडब्ल्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्ल्यूडब्ल्ल्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब्यूडब
googlecoइन और एंटर दबाएँ
ध्यान दें कि कर्सर अब गूगल सर्च बार में है
आगे सर्च बार के बाहर पेज पर कहीं भी कर्सर को क्लिक करें
अब कीबोर्ड से अपोस्ट्रोफ की दबाएँ
विंडो पर नीचे बाएँ कोने में क्विक फाइंड लिंक्स सर्च बॉक्स पर प्रदर्शित होती है
इस बॉक्स में टाइप करें बेंगाली
ध्यान दें कि बेंगाली लिंक चिन्हांकित होता है
आप वेब पेज में लिंक्स के लिए जल्दी और आसानी से सर्च कर सकते हैं
मानिए कि आप किसी अन्य कंप्यूटर या डिवाइस से अपनी सेटिंग और प्रिफ्रेंसेस के साथ फायरफॉक्स ब्राउजर को ऐक्सेस करना चाहते हैं
जैसे कि अपने मोबाइल फोन से क्या वह संभव है
फायरफॉक्स सिंक फीचर्स आपके सभी ब्राउजर डेटा को संचित करता है जैसे बुकमार्क्स हिस्टोरी और मौजिला सर्वर पर संस्थापित सुरक्षित एक्सटेंशंस
आप इस सर्वर से अपने कंप्यूटर्स को सिंक कर सकते हैं और आप अपने ब्राउजर डेटा को ऐक्सेस कर सकते हैं
अब सिंक फीचर्स को सक्षम बनाएँ
मेन्यू बार से टूल्स पर क्लिक करें और सिंक सेट करें
फायरफॉक्स सिंक सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
क्योंकि मैं सिंक का उपयोग पहली बार कर रहा हूँ क्रिएट आ न्यू अकाउंट क्लिक करें
अकाउंट डिटेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
इस ट्यूटोरियल के लिए हमने पहले ही एक जीमेल अकाउंट बनाया है
STUSERFFgmailcom इमेल एड्रेस फील्ड में STUSERFFgmailcom प्रविष्ट करें
चूसे आ पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड प्रविष्ट करें
कनफर्म पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड फिर से प्रविष्ट करें
डिफॉल्ट रूप से सर्वर फायरफॉक्स सिंक सर्वर चयनित होता है
हम सेटिंग्स नहीं बदलेंगे
टर्म्स ओएफ सर्वाइस और प्राइवेसी पॉलिसी बॉक्स चेक करें
नेक्स्ट पर क्लिक करें
फायरफॉक्स सिंक की प्रदर्शित करता है
यह वह की है जिसे उन मशीनों से अपने सिंक को ऐक्सेस करने के लिए अपने सिस्टम में आपको प्रविष्ट करना जरूरी है
सेव बटन पर क्लिक करें
सेव सिंक की डायलॉग बॉक्स में वह प्रदर्शित होता है
डेस्क्टॉप पर ब्राउज करें
सेव पर क्लिक करें
फायरफॉक्स सिंक keyएचटीएमएल फाइल डेस्क्टॉप पर एचटीएमएल फाइल के रूप में सेव होती है
इस की को नोट करें और नम्बर को सेव करें जहाँ से आप आसनी से प्राप्त कर सकें
आप इस की को प्रविष्ट किए बिना अन्य कंप्यूटर से अपने सिंक अकाउंट को ऐक्सेस करने में समर्थ नहीं होंगे
नेक्स्ट पर क्लिक करें
कनफर्म में आप रोबोट डायलॉग बॉक्स देखेंगे
बॉक्स में प्रदर्शित शब्दों को प्रविष्ट करें
सेटअप पूर्ण होता है
फायरफॉक्स सिंक सेटअप डायलॉग बॉक्स के बाएँ सिंक ऑप्शन बटन पर क्लिक करें
आप अपने सिंक ऑप्शन को यहाँ सेटअप कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए हम डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं बदलेंगे
डोन पर क्लिक करें
नेक्स्ट पर क्लिक करें फायरफॉक्स कंटेंट को सत्यापित करता है
फिर फिनिश बटन प्रदर्शित होता है फिनिश पर क्लिक करें
आपके पास आपके कंप्यूटर पर सेटअप फायरफॉक्स सिंक है
और अब आप अन्य कंप्यूटर से अपने ब्राउजर डेटा को कैसे करेंगे
आपको अन्य कंप्यूटर या डिवाइस टूल में सिंक की आवश्यकता है
इस ट्यूटोरियल के लिए हम इन निर्देशों को स्लाइड में सूचीबद्ध करेंगे
आप अपने अन्य कंप्यूटर या डिवाइस में सिंक करने के लिए इन निर्देशों का अनुकरण कर सकते हैं
अन्य कंप्यूटर या डिवाइस में फायरफॉक्स ब्राउजर खोलें
मेन्यू बार से टूल्स और सेटअप फायरफॉक्स सिंक पर क्लिक करें
आई हेव आ फायरफॉक्स सिंक अकाउंट पर क्लिक करें
अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें
अपनी सिंक की प्रविष्ट करें
फिनिश पर क्लिक करें
अब अन्य कंप्यूटर भी सिंक है
आप अन्य कंप्यूटर टूल्स से अपने ब्राउजर डेटा को ऐक्सेस कर सकते हैं
आप नये बुकमार्क को सेव भी कर सकते हैं और यहाँ अपने प्रिफ्रेंसेस बदल सकते हैं
यह बदलाव स्वतः ही सिंक मैनेजर में अपडेट हो जायेगा
आखिर में सीखते हैं कि सिंक मैनेजर में अपडेटेड डेटा के साथ एक मूल कंप्यूटर के साथ सिंक कैसे करें
अब मेन्यू बार से टूल्स पर क्लिक करें
ध्यान दें कि सिंक ऑप्शन अब सिंक नोव के रूप में प्रदर्शित हो रहा है
सिंक मैनेजर के साथ अपने डेटा को सिंक करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं
आप अपना फायरफॉक्स सिंक अकाउंट डिलीट या सिंक दाता हटा भी सकते हैं
आप यह कैसे करेंगे
यह काफी आसान है
नया ब्राउजर खोलें
एड्रैस बार में टाइप करें httpsaccountservicesmozillacom एंटर दबाएँ
यूजरनेम में STUSERFFgmailcom प्रविष्ट करें
अब पासवर्ड प्रविष्ट करें
लोगिन पर क्लिक करें
फायरफॉक्स सिंक वेबपेज खुलता है
अब आप फायरफॉक्स सेटिंग्स और डेटा बदल सकते हैं
अब इस पेज को लॉग आउट करें
अब plug इन्स के बारे में सीखते हैं
plug इन्स क्या है
plug इन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो फायरफॉक्स ब्राउजर में विशिष्ट कार्यक्षमताओं को जोड़ता है
फिर भी plug इन्स extensions से भिन्न है
plug इन्स अन्य कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स हैं
plug इन्स फायरफॉक्स ब्राउजर में अन्य पक्ष के प्रोग्रम्स को समाहित करता है
plug इन्स आपको फायरफॉक्स में विडियो चलाने मल्टि मीडिया कंटेंट देखने वाइरस को स्कैन करने और एनिमेशन को रन करने की अनुमति देता है
उदाहरणस्वरूप फ्लैश एक plug इन है जिसे आपने विडियो देखने के लिए अपने फायरफॉक्स ब्राउजर में संस्थापित किया है
अब plug इन्स देखें जो फायरफॉक्स में संस्थापित हैं
मेन्यू बार से टूल्स और एडन्स चुनें
एडन मैनेजर टैब खुलता है
बाएँ पैनल से plug इन्स पर क्लिक करें
बायाँ पैनल अब plug इन्स दर्शाता है जो आपके कंप्यूटर पर संस्थापित हैं
और plug इन्स कैसे संस्थापित करें
प्रत्येक plug इन संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड़ करें और फिर अपने कंप्यूटर पर संस्थापित करें
प्रत्येक plug इन्स के लिए भिन्न संस्थापन प्रक्रिया हो सकती है
मौजिला फायरफॉक्स के लिए उपलब्ध plug इन्स के बारे में और उनको संस्थापन करने के लिए निर्देशों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया मोजिल्ला वेबसाइट पर जाएँ
अब इस ब्राउजर को बंद करें
plug इन्स को अक्षम करने के लिए केवल डिसेबल बटन पर क्लिक करें
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा Quick फाइंड लिंक फायरफॉक्स सिंक और plug इन्स यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
फायरफॉक्स से तीन plug इन्स डाउनलोड तथा संस्थापित करें
एक फायरफॉक्स सिंक अकाउंट बनाएँ
अपने फायरफॉक्स ब्राउजर को अन्य कंप्यूटर से ऐक्सेस करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुंबई की ओर से अब मैंआपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद